पुरुस्कार भी मिलते है जो काफी ही अच्छी है और यह काफी--

बहुत सारे आदमी लोग इधर से उधर आते रहते है यह सड़क--

अच्छी आवाज़ निकलती है यह संथाली लोग बजाते है और उसे बनाते है तो लोग काफी अच्छे है।

बड़े बच्चे लोग खेलते है यह मैदान काफी साफ़ सुथरा है।